इसके आस पास बहुत ही बाइक खड़ी है बाइक के पास में कुछ आदमी खड़े है कुद कुछ आदमी बाइक के ऊपर बैठे है।

और पेड़ पौधे के पीछे देखा जाए तो ये घर की तरह कुछ बना हुआ है ऐसे ही बहोत ही सुंदर घर है।

यहां पर एक होटल है या फिर कुछ रेस्टोरेंट वगैरह कुछ ऐसा है जिसमें--

यहां पर एक घर है घर के पीछे की साइड का फोटो लिया हुआ है घर में एक ही खिड़की लगी हुई है जो कि पीछे की साइड लगी हुई है।

और इधर के साइड में नीली नीली हरियाली दिखाई दे री है जो की बैठने के लिए बहोत ही सुंदर स्थान है इधर के साइड --

इधर की साइड में एक मोटरसाइकिल है जिनका कांच कांच दिख रहा है कांच में कुछ पीछे का वॉलपेपर दिखाई दे रहा है।